मुझे एक रूम दिखाई दे रा है इस रूम के अंदर दो टेबल दिखाई दे रे हैं और दो पोस्टर दिखाई दे रे हें।

और यहां उम मॉल सामाग्री के ऊपर उन सामाग्रियों का रेट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और ऊपर--